और नीचे ईंटा का डिजाइन दिया हुआ है और उधर चदरा का दिवाला बना हुआ--

यहां एक मंदिर है और एक पेड़ पौधा है और बगल में नदी बह रहा है।